रो बगल में रोड है जहाँ पे एक पोल है। पोल से बहुत सारे तार है। यहाँ पर एक टोटो है बगल में दो बाइक है।

जो मूर्ति पार्क में उपस्थित है।

और वो व्यक्ति सो लेटा हुआ है।

इस बिल्डिंग के बगल में तीन-चार पौधे हैं बड़े-बड़े पेड़ हैं जो बहुत हरा-भरा है।